ईईई एगो भारतीय स्टेट बैंक ह और इ एगो घर ह ओमे मीटर विटर लगावल बा निक लागता मोटरसायकल खूब खड़ा बारी सन द्वारी पर सायकल भी खड़ा बारी --